ब्लू कलर का और वाइट कलर का दिख रहा है।

कुछ अलमारियां भी बनाई गई हैं और इस रूम में बहुत सारे चेयर रखे हुए हैं।

बाहर भी कुछ ठेले और साइकिल भी लगाए गए हैं तथा बाहर में कुछ पेड़-पौधे भी हैं।

के आस पास में गार्डेन भी बनाए गए हैं।

यह एक बैंक का बाहर का दृश्य--

इस बैंक का नाम एच_डी_एफ_सी बैंक है।

लोहे के माध्यम से इस बॉक्स को खड़ा किया गया है।

दुकान में भी कुछ लोग अंदर में नजर आ रहे हैं।

यह एक घर का दृश्य है जहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

में फूलों से सजावटे की गई है।

नीचे में एक और लड़का दिख रहा है।

फील्ड में बहुत सारे लोगों का भीड़ भी नजर आ रहा है।

यह एक पार्लर दुकान का बाहर का दृश्य है।

जहां पे एक पोस्टर लिखा गया है श्रेया ब्यूटी पार्लर --

हम इसमें एक छोटा सा डब्बा भी नजर आ रहा है जिसमें कुछ लोहे की समाने भी रख--

यहां पे एक चेयर भी नजर आ रहा है जो रेड कलर का है।

बिल्डिंगो पे पोस्टर भी लगाया गया है।

एक चट्टान का दृश्य है जहां पे इस चट्टान में छोटे छोटे घास भी जमे हुए हैं।

एक एक जगह पे घास भी नजर आ रहा है तथा इसके आसपास में लंबे बड़े पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

वहाँ पे स्टील के माध्यम से रेलिंग बनाई गई है।

यहां पे बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं।

इस रूम में बहुत सारे दीवारों पर डिजाइन भी बनाया गया है और वाइट कलर का पेंट किये गए है।

एवं एक टेबल भी लगाया गया है जिस पर वाइट कलर का पर्दा बिछाया गया है।

में मार्बल का डिजाइन भी बनाया गया है।

दुकान का एक पोस्टर भी लगाया है गया है जिसमें लिखा गया गणपति जनरल एंड शृंगार स्टोर ।

कुछ खिलौने बैट और कुछ पौदान भी नजर आ रही है।

बल्टी भी है तथा इसमें एक चेयर भी लगाया गया है।

जो कुछ सामान पेटी में रखे हुए हैं तथा इस दीवारों में अलमारियां भी बनाई गई है जिनका कलर व्हाइट है।

मूर्ति जैसा पत्थर भी बनाया गया है।